एक गाड़ी का शोरूम है जिसमें बहोत सारी बुलेट खड़ी हुई है।

और लाइटे सी बहोत दिख रहे हैं।

कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं रंग बिरंगी।

बहुत सारे बैठे भी हैं कुछ खड़े भी हैं।

एक दुकान है जिसमें उसके सामने एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

सामने कुछ लाइटें भी लगी हुई हैं।

और एक की जेब में मोबाइल है पीछे खड़ा हुआ है।

बिल्डिंग बनी हुई हैं जिसमे दो इंसान दिख रहे हैं।

कई तरह की लाइटें लगी हुई हैं।

उधर एक लेडिस लड़की भी खड़ी हुई है।

पीछे भी एक आदमी खड़ा हुआ है।

पीछे की तरफ बोतल्स भी रखी हुई है।

में चॉकलेट वगैरह रखे हुए हैं।

काफी सारे इंसान हैं जिनका चेहरा सही से नहीं दिख रहा है।

एक दुकान है जिसमें कई सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

एक लैब है जिसमें काफी सारी मशीनें हैं।

कुछ लाइटें भी लगी हैं।

उसका चेहरा सही से नहीं दिख रहा है।